और एक लड़का बाल काट रहा उम्म दूसरी की कटिंग कर रहा हैनीचे बाल भी दिख रहे है बिखरे हुए और पर्दा भी लगा हुआ दिखई दे रहा है।

है आदमी है जो नीचे बैठा हुआ है जो मिटटी को उठा रहा है हाथ में --

इस इमेज में हमें एक स्टेज दिखाई दे रहा है। जिसमे एक देवीजी की मूर्ति ऊपर रखी हुई है जो साड़ी पहने ब्लू कॉलों की बहुत सुंदर लग रही हैं।

जो लुंगी लपेटे हुए है और ये कुछ कलश टाइप की कुछ डेकोरेशन हुआ है जो अच्छा लग रहा है।

और बहुत सारी सीढियाँ भी हमें दिखाई दे रही हैं चार पाँच अ हमें आदमी खड़े हुई सीढियों पे दिखाई दे रहे हैं।

अ इस इमेज में हमें सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा हुआ है इलाहाबाद बैंक ।